बहुत सारे व्यक्ति टहलते हुए दिखाई दे रहे --

टेबल के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है।

जो आलू भरे पराठे हैं।

यह तस्वीर एक हनुमंत धाम की है।

जिसमें छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे और कुछ फूलों के भी पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें बहुत सारे लोग मछली को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बहुत सारी मकाने दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक मंदिर दिखाया है।

जिसमें कुछ बैंच रखी हुई हैं। लकड़ियां रखी हुई हैं।

बहुत सारी लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

पीछे विंडो भी लगी हुई दिखाई दे रही --

एक महिला ने अपना मुंह दुपट्टे से ढक रखा है।

उसकी छांव के लिए ऊपर से टेंट लगाई गई है।

यह तस्वीर एक रेस्टो की है।

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग दिखाई है।

एक टेबल है जिसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसे ऊपर से बंद किया हुआ बनाया गया है।

और भी बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

ओ एक जाली के अंदर बंद हैं।

इस तस्वीर में एक मॉल का दिखाया गया है।

सामने एक रैक बनी हुई है।

इस तस्वीर में चारबाग स्टेशन दिखाया गया है।

पार्क के बीच में कुछ पत्थर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

अंदर जाने के लिए रेलिंग्स लगी हुई हैं।

यह तस्वीर एक मेट्रो स्टेशन की है।

सामने एक पार्क सा भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

गमले रखे हुए हैं कुर्सियां रखी हुई है।

एक औरत सितार को बजाती हुई दिखाई दे रही है।

बहुत सारे डिब्बों में सामान रखा हुआ है।

दीवाल पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं।